ये तोता बहुत ही मीठी बोली बोलते हैं बहुत ही प्यारी बोली बोलते हैं इनको जो भी सिखाए वही बोली बोलने की कोशिश करते हैं।

बहोत ही शानदार बहोत ही सुंदर कुर्ता पेहन रखा--

जेसा की हम देख रहे है चित्र में--

गिरे हुए है जिनको ये खा रहे है।

बहुत ही आकर्षक झूले लगे हुए हैं।

ये फूलो की दूकान का द्रिश्य है यहाँ पर--

उनको अपने प्रवचन और कथन से अपनी शिक्षा से--

पर आने का संदेश दे रहे हैं।

दोनो तरफ पहाड़ और पहाड़ पर--

चित्र में दिखाया जाने वाला यह दृश्य--

मेज पर सजाए गए सामान का है जिसको बहोत ही सुंदर से सजाया गया है।

गेट को फूलों से बहोत सुंदर से सजाया गया है।

बहुत ही सुंदर गुब्बारों से सजाया गया हैं।

हम देख रहे हैं की इस चित्र में--

और दिखने में जेसे लग रहा है।

चित्र में हम ढेर सारी हरी मिर्च देख रहे हैं।

छिल देखने में बहोत ही गेहरी महसूस हो रही हैं।